और यहां पर सैनिटाइजर रखा हुआ है पीछे एक कुर्सी रखी हुई है।

सामने एक शॉप दिखाई दे रही है।

और ऊपर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक कोने में कैमरा दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुर्सी और मेज दिखाई दे रही है।

और यहां पर दो जेंट्स और लेडीज पूजा कर रही है।

सामने एक रूम दिखाई दे रहा है यहां पर दो बहुत बड़ी मशीन रखी हुई है।

और यहां पर दो लैपटॉप भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बेड भी दिखाई दे रहा है।

पीछे कितने सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसके ऊपर एक बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

सामने एक बुक की शॉप दिखाई दे रही है।

और यहां पर कितनी सारी किताबें रखी हुई है।

एक जेंट्स दिखाई दे रहा है और दूसरा लड़का एक शीशे में दिखाई दे रहा है।

यहां पर ब्लैक कुर्सियां रखी हुई है।